पहाड़ भी है यहां बहोत बड़े बड़े पहाड़ है।

खाने में अच्छा लगता है ये सब--

और साइज में पेड़ भी है।

एक रेनकोट है जो कि --

यहां अ बाइक है और यहां व ओ-ओ पेड़ है और --